नजर आ रही है जो लॉन है वो दिखाई दे रहा है जहाँ पर खाफी अच्छे से इंटेरन्स का स्टेचू रखा नजर आ रहा है। वही वहां काफी अच्छे से की गयी दिख रही है और दीवार दिख रही है। उसके वहां कुछ क्रीम कलर की नजर आ रही--

और एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो कर्याले दिख रहा है वह सफ़ेद रंग का दिख रहा है और यहाँ काफी लोग नज़र आ रहे है काफी सारे वहा बाइक्स दिखाई दे रहे है बाइक्स से इलेक्ट्रिक पोल्स अह कुछ इलेक्ट्रिक टेबलस वायर्स नज़र आ रहे है।

यहाँ पर काफी बड़े नज़र आ रहे है हरी घास नज़र आ रही है और कंपाउंड दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का--

यहाँ पर एक सर्विस सेंटर गैरेज नजर आ रही है जहाँ पर दो ऑटो रिक्शास दिखाई दे रहे हैं जो काले रंग के दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर जो मैकेनिक्स है वहाँ वॉक करते हुए नजर आ रहे है और वहाँ पर काफी सारे बाइक्स नजर आ रहे है।

इलेक्ट्रिक वायर्स और इलेक्ट्रिक बोर्डस नजर आ रहे है यहाँ पर काफी सारे कार दिखाई दे रहे हैं।